पर्ल में वेरिएबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे
मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु लिनक्स1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 जो है पर्ल रिविजन5 वर्जन 14 और सबवर्जन 2 मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा
आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
पर्ल में वेरिएबल्स वेरिएबल्स का उपयोग वैल्यूज को संचित करने के लिए करते है जैसे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स नंबर्स या अरैज
एक बार वेरिएबल घोषित हो जाता है तो इसका उपयोग स्क्रिप्ट में बार बार किया जा सकता है
स्केलर सिंगल वैल्यू का प्रतिनिधित्व करता है और केवल स्केलर्स संचित करता है
स्केलर वेरिएबल्स सिंबल का उपयोग करके घोषित किये जाते हैं
वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखते हैं
वेरिएबल निम्न प्रकार से घोषित किया जा सकता है डॉलर प्रायोरिटी सेमीकॉलन
पर्ल में वेरिएबल का नाम कई फॉर्मेट्स में हो सकता है
वेरिएबल्स अक्षर या अंडरस्कोर के साथ शुरू होते हैं
और लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर्स या उपर्युक्त तीनों का मिश्रण हो सकता है
बडे अक्षरों के साथ घोषित होने वाले वेरिएबल्स का पर्ल में विशिष्ट अर्थ होता है
अतः बडे अक्षरों का उपयोग करके वेरिएबल्स को घोषित करने से बचें
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट वेरिएबल्स डॉट पीएल एम्परसैंड एम्परसैंड टर्मिनल पर कमांड प्रोम्प्ट को अनलॉक करेगा
अब एंटर दबाएँ
यह गेडिट टेक्स्ट एडिटर में variablesपीएल फाइल खोलेगा
डॉट पीएल पर्ल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है
फाइल में निम्न टाइप करें डॉलर प्रायोरिटी सेमीकॉलन और एंटर दबाएँ
अतः हमने वेरिएबल प्रायोरिटी घोषित किया है
आपको इसके उपयोग के पहले वेरिएबल घोषित करने की आवश्यकता नहीं है
आप केवल इसका उपयोग अपने कोड में कर सकते हैं
अब वेरिएबल प्रायोरिटी को संख्यात्मक वैल्यू निर्दिष्ट करें
इसके लिए टाइप करें डॉलर प्रायोरिटी स्पेस इक्वल टो स्पेस 1 सेमीकॉलन
और एंटर दबाएँ
आगे टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ओएफ वेरिएबल is डॉलर प्रायोरिटी स्लैश एन क्लोज डबल कोट सेमीकॉलन और एंटर दबाएँ
स्लैश एन नई लाइन कैरेक्टर है
अब variablesपीएल के रुप में फाइल किसी भी स्थान पर सेव करें
मेरे केस में यह homeअमोल डाइरेक्टरी में सेव होगी
अब इस फाइल को सेव करें
अब variablesपीएल फाइल की अनुमति को बदलें जो हमने अभी बनाई है
ऐसा करने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें चमोड़ 755 वेरिएबल्स डॉट पीएल यह फाइल को पढने लिखने और निष्पादन करने का अधिकार प्रदान करता है
टर्मिनल पर इस पर्ल स्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए टाइप करेंperl हाइफेन सी वेरिएबल्स डॉट पीएल हाइफेन सी स्विच किसी भी कंपाइलेशनसिंटेक्स एरर के लिए पर्ल स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है
अब एंटर दबाएँ
यह हमें बाताता है कि यहाँ हमारी पर्ल स्क्रिप्ट में सिंटेक्स एरर नहीं है
अब पर्ल वेरिएबल्स डॉट पीएल टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें और एंटर दबाएँ
प्रदर्शित आउटपुट हाइलाइट होता है
हम वेरिएबल जिसे हमने घोषित किया है उसे स्ट्रिंग वैल्यू भी निर्दिष्ट कर सकते हैं
टेक्स्ट एडिटर विंडो पर वापस जाएँ
डॉलर प्रायोरिटी इक्वल टो ओने के बजाय टाइप करें डॉलर प्रायोरिटी इक्वल टो सिंगल क्वोट में हिघ कृपया ध्यान दें नियत कार्य दायें से बायें मूल्यांकित होते हैं
स्केलर किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है यह स्ट्रिंग नंबर होना चाहिए
फाइल को सेव करें और पर्ल हाइफेन सी वेरिएबल्स डॉट पीएल टाइप करके एक बार फिर से स्क्रिप्ट को कंपाइल करें अब एंटर दबाएँ
यह हमें बताता है कि यहाँ कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है
पर्ल वेरिएबल्स डॉट पीएल टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें औऱ एंटर दबाएँ
आउटपुट दिखाया गया है
अब टेक्स्ट एडिटर विंडो पर वापस जाएँ
आप स्केलर्स का उपयोग डबल कोट्स में भी कर सकते हैं
डॉलर प्रायोरिटी डबल कोट्स में स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स के रूप में
इस फाइल को सेव करें और बंद करें
अब हम सीखते हैं कि मल्टिपल वेरिएबल्स को कैसे घोषित करें
ऐसा करने के लिए टेक्स्ट एडिटर में नई फाइल खोलें
टर्मिनल पर टाइप करें गेडिट मल्टीवर डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
यह टेक्स्ट एडिटर में मल्टीवर डॉट पीएल फाइल खोलेगा
अब टाइप करें डॉलर फर्स्टवर कॉमा डॉलर सेकंडवर सेमीकॉलन और एंटर दबाएँ
वेरिएबल डॉलर फर्स्टवर से डॉलर सेकंडवर में वैल्यू कॉपी करने के लिए टाइप करें डॉलर फर्स्टवर स्पेस इक्वल टो स्पेस डॉलर सेकंडवर सेमीकॉलन और एंटर दबाएँ
सभी गणितीय ऑपरेटर्स जैसे additionजोड़ सबट्रैक्शन घटाव मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिविजन भाग को इन वेरिएबल्स पर किया जा सकता है
देखते हैं कि हम इसे पर्ल का उपयोग करके कैसे करते हैं
टेक्स्ट एडिटर पर जाएँ
और अब डॉलर फर्स्टवर इक्वल टो डॉलर सेकंडवर इक्वल टो tenसेमीकॉलन टाइप करके इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू 10 निर्दिष्ट करें और एंटर दबाएँ
अब इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए टाइप करें प्रिंट डबल कोट firstVar डॉलर फर्स्टवर एंड secondVar डॉलर सेकंडवर स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
अब इस फाइल को सेव करें
अब दो वेरिएबल्स में वैल्यूज जोडें
इस प्रकार के लिए डॉलर एडिशन स्पेस इक्वल टो स्पेस डॉलर फर्स्टवर प्लस स्पेस डॉलर सेकंडवर सेमीकॉलन और एंटर दबाएँ
ध्यान दें हमने वेरिएबल एडिशन को घोषित नहीं किया है
एक बार फिर वेरिएबल्स एडिशन की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए टाइप करें प्रिंट डबल कोट एडिशन इस डॉलर एडिशन स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकॉलन
इस फाइल को सेव करें
इस फाइल को फिर से कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर पर्ल हाइफेन सी मल्टीवर डॉट पीएल टाइप करें यहाँ कोई सिंटेक्स एरर नहीं है अतः हम पर्ल मल्टीवर डॉट पीएल टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित कर सकते हैं
यह हाइलाइट आउटपुट प्रदान करेगा
इसीतरह सबट्रैक्शन घटाव मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिविजन भाग का अभ्यास करें
मैंने यहाँ कोड लिखा है
अब इस फाइल को सेव करें और बंद करें
अब पर्ल हाइफेन सी मल्टीवर डॉट पीएल टाइप करके फाइल को कंपाइल करें
यहाँ कोई सिंटेक्स एरर नहीं है
अतः हम पर्ल मल्टीवर डॉट पीएल के रूप में स्क्रिप्ट को निष्पादित कर सकते हैं
निष्पादन पर आउटपुट इस तरह दिखेगा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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
पर्ल में स्केलर वेरिएबल्स का उपयोग और घोषित करना
नियत कार्य नंबर वेरिएबल को घोषित करें
इस 10 निर्दिष्ट करें
घोषित वेरिएबल को प्रिंट करें
2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स को घोषित करें
नमस्ते और इंडिया इन वैल्यूज को उन्हें निर्दिष्ट करें
उन दो वेरिएबल्स को एक के बाद एक प्रिंट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपयाcontact at स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
धन्यवाद